और पेड़ से पत्ती वत्ती हलकी दिखाई दे रही हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे है खजूर का पेड़ है हमे लागत --

बिजली बनावे वाले भी लगे हैं। ट्रामफारम हमें लागत है।

ई दिखाई दे रही हैं। सेल्फी ले रही हैं।

तकरी रखी है तीन-तीन ये आदमी दिखाई दे रहे हैं।